जबरदस्त ओ सीन दिखाई दे रहा है पहाड़ों का।

पेड़ा दिखाई दे रहा हे हरी हरी घास लगी हुए हे स्विमिंग पूल के लिए बच्चे नहा रहे हे स्टंट करने के लिए पाइप लगे हुए है।

ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है जंगल का नजारा अच्छा दिख रहा है पेड़ पौधे लगे हुए है बहुत सुंदर सा नजारा दिख रहा है।

कुछ पेढ़े भी लगे हुए है और बिल्डिंग पर कुछ रस्ता भी बना हुआ ऊपर जाने का कुछ लिखा हुआ भी है।

बनाया गया है बढ़िया लग रहा है दिखने में और सुन्दर सा माहौल है और लग रहा है।

इसमें मिठाई भी रखीं गई है कई प्रकार की मिठाइयां भी रखीं गई है लाइट पंखे है अच्छी शॉप लाइट भी है सामान बना हुआ।

पेड़ लगे हुए है लगे हुए है काफी अच्छा सा दिखाई दे रहा है।